इसमें कई सारी कुर्सियां लगी हुई हैं कुछ कुर्सियां अलग लगी हुई हैं और कुछ कुर्सियां एक मेज के साथ लगी हुई हैं कुछ पर्दे दिखाई दे रहे हैं आस-पास।

एक लड़का बीच में खड़ा है दो लड़के ऊपर खड़े हैं और तीन लड़के नीचे खड़े हैं।

इन सब में ये बताया गया है कि एक ही समय पर--